पीछे एक हवा वाला आला लगा हुआ है और एक पानी ठंडा करने वाला आला है।

सबसे पहले एक टेबल किताब है उसकी कीमत दो सो रुपए है।

और एक चोर जूतियों की तरफ देख रहा--